और स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है और खाली--

साइकिल दिख रही है और नीचे ज़मीन भी दिखाई दे रही है एक डंडा दिखाई दे रहा है।

और यहां बहुत बड़े बड़े बोरे दिखाई दे रहें हैं।

और एक बॉक्स दिख रहा है और किचन में बहोत सारा समान दिख रहा है।

चौप के ऊपर बैनर लगा हुआ है उसके ऊपर वाई टू जेन--

और यहां गाड़ियां दिख रही है।

खिड़कियां दिख रही हैं और यहां बहुत सारी बाइक्स दिख रही हैं साइकिल दिख रही है लोग दिखाई दे रहे हैं।